फ्रेम लगी हुई दिख रही हैं।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

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कोई फंक्शन दिखाई दे रहा है बहुत सारी कुर्सी टेबल दिखाई दे रहे है।

अंदर एक वॉशरूम दिखाई दे रहा है।